दिखाई दे रहे हैं और एक ठो बोर्ड दिखाई दे रहे ब्लू कलर का ऊपर में वहां में जो बंधन बैंक लिखा हुआ है।

और लेफ्ट साइड में फ्लावर पाट लोग भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक बड़ा सा एक चेयर ब्लैक कलर में और एक ब्लू कलर का चेयर भी दिखाई दे रहा हैं।

ये तस्वीर में जो एक पेंडल दिखाई दे रहे हो और स्टेज में जो पंच मूर्ति जो रखा हुआ दिखाई दे--

और क्यू_आर दिखाई दे रहा है जूस बोतल लोग दिखाई दे रहा है।

राइट साइड में जो एक घर दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में जो एक पुराना सा घर दिखाई दे रहा है और--

क्लॉउडी दिखाई दे रहे है और उसका स्काई जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे और इलेक्ट्रिक वायर्स लोग दिखाई दे रहे--

यह तस्वीर में जो एक घर दिखाई दे रहा है और छोटा सा बालकनी दिखाई दे रहा है।

और वॉल ब्रश और मार्बल भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है जमीन में।

और बाउंड्री का अंदर में जो एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है।

और दो डिस्को लाइट जलते हुए दिखाई दे रहे जो ग्रीन और पिंक कलर में है।

यह तस्वीर में जो पहाड़ के बीच में एक रोड दिखाई दे रहा है।

और गिट्टी दिखाई दे रहा है राइट साइड में और अ बेलचा लोग दिखाई दे रहे हैं और थाली लोग दिखाई दे रहे जहां में गिट्टी लोग उठाने वाला सब--

और लेफ्ट साइड का वाल का कलर जो है ब्राउन कलर का और वहां में एक रेड कलर का बॉक्स --

और फ्लोर का कॉर्पेट का कलर जो ब्राऊन कलर में है।

और ग्रीन वेजेटेबल और सब्जी लोग भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और स्विच बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में जो एक पेंडल दिखाई दे रहा है।

जो रेड पर्दा और फ्लावर लोग से डेकोरेट किया हुआ है।

बेलकनी का लेफ्ट साइड में एक प्लांट दिखाई दे रहा--

अ एक व्हाइट बोर्ड छोटा सा वॉल में दिखाई दे रहा है और चेयर येलो कलर में भी दिखाई दे रहा है और छोटा सा एक टी_वी दिखाई दे रहा है।

और घर का वॉल कलर जो रेड और वाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं।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

और लेफ्ट साइड में जो दो कार जो पार्किंग किया हुआ है दिखाई दे रहे हैं जो कार का कलर जो है ब्लू और सिल्वर कलर में है।

ये तस्वीर में जो बहुत सारा मर्द और औरत लोग जो--

चेयर और टेबल लोग दिखाई दे रहे है चेयर और सोफा जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं और टेबल जो वो--

ये तस्वीर में जो एक गैरेज दिखाई दे रहा है।

आप ग्रीन कलर में है और बहुत सारा इंसान लोग जो खड़ा हो रहे हैं।

वॉल जो ग्लास का दिखाई दे रहा है।

कारपेट दिखाई दे रहे हैं और स्टॉल दिखाई दे रहे हैं और एक पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर का है उसका पत्ता।

और एक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो ब्राऊन कलर में है।

पेड़ पौधा लोग दिखाई दे रहे हैं जो फ्रेश ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं और--